और कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं जो की हरे कलर की पत्ते हैं| बाहर रोड दिख रहा है जिसमे काफी सारी गाड़ियाँ जाती हुई दिख रहीं हैं| कुछ हरे --

कत्थई कलर का पैंट है कुछ काँच लगे हुए हैं सामने एक बोर्ड लगा है जो हरा कलर का दिख रहा है कुछ जाली टाइप का लगा हुआ है।

इस पे ये जानवर बैठे है जो भी लकड़ियां रखी हुई है कुछ बैठें हुए हैं।

बहुत सारा मैदान दिख रहा है यहाँ पे हरे कलर की घासे लगी है ऊपर आसमान दिख रहा है जो कि नारंगी और सफेद लग रहा है आस-पास पेड़ लगे हुए है।

यहाँ पे एक हरे कलर का कार्पेट बिछा हुआ है ये बड़ा सारा हॉल टाइप का है यहाँ पे कुछ टेबलें रखी हुई हैं जिसपे क अ रानी कलर का कप कपड़ा डाला हुआ है सामने कुछ कुर्सियाँ रखी हैं जो कि लाल कलर की कुछ टेबलें रखी हुई हैं।

और सामने यहाँ पर काफी सारे पत्थर पड़े हुए हैं काफी सारा कचरा दिख रहा है सामने काफी सारे कुछ पेड़ लगे हुए हैं जिसमें हरे कलर के पत्ते दिख रहे हैं एक मकान बना हुआ दिख रहा है जो कि सफ़ेद रंग का है और आस-पास काफी सारे पेड़ लगे हुए हैं।

तारा पार्क लग रहा है मैदान है यहाँ पर काफी सारे झूलें रखे हुए हैं कुछ हरे हैं कुछ लाल हैं।

तालाब है तालाब के अंदर काफी सारे पेड़ लगे हुए दिख रहे हैं आस-पास काफी सारे बास लगे हैं।

यहाँ पे काफी सारी कुर्सियाँ रखी हैं जो कि सफेद रंग की हैं उसपे सफेद कपड़ा बिछा हुआ है कुछ टेबलें रखी हुई हैं।